जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यह एक एक्सिस बैंक का एटीएम है जहां पर बाहर में बहोत सारे--

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहाँ पर एक पार्क है उस पर एक साइन बोर्ड है जो ब्लू रंग का हैं।

कांउटर पर रखे हुए है।

चिमनी दिखाई देरी है जिसमें धुआं उठ रहा है।

जैसा कि मैं देख पा री हूं यहाँ पर एक खाली मैदान है मैदान के--

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहाँ पर एक टेबुल है टेबुल पर कुछ --

शोरुम है जहां पर शीशे से बहुत सारी गाड़ी दिखाई दे रही है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यह कोई स्कूल है स्कूल के --

बहुत सारे फादर बैठे हुए है और ग्रुपिंग फोटो खिंचवा रहै है।

कोई एक्सरसाइज कर रहा है ऐसा लग रहा हैयह कोई जिम है।